बहुत ही अच्छी जगह है ये भी --

जोकि मंगछी के बने हुए हैं जंग जैसे बने हुए हैं केमिकल वेमिकल बनाने के लिए बोलते कांच की बोतले रखी हुई हैं इत्यादि --

यह काफी अच्छा है ये मैला भरा है लाइब्रेरी है यहाँ पर बुक वुक रखी हुई है जाने कितनी।

और आप कैमरे की नज़र में भी है ठीक है। इत्यादि जैसे म काफी अच्छा है जो की शटरिंग लगी हुई है टेबल रख --